चेअर दिखाई दे रही है यहाँ पर कही सारे बर्तन दिखाई दे रहे है और कई सारा फ़र्निचर दिखाई दे--

कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर व्हाइट ग्रीन ब्लू दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है कुछ ऑटो दिखाई दे रहे है और कुछ बाइक साइकल दिखाई दे रहे है।

इसका कलर पर्पल ऑरेंज व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहा पर कुछ खिड़कियाँ जिनका कलर ब्लू ब्लॅक दिखाई दे रहा है। यहापर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --

उपर आसमान का कलर ब्लॅक दिखाई दे रहा है और कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जिन के अंदर कई सारा समान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

पर दीवार का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है और शटर का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे--